जिनके पास एक हरी कलर की गाड़ी है।

बल्ब और उसके नीचे एक फोटो फ्रेम भी दिख रहा है।

ब्लैक कंप्यूटर्स और यहां पे चेयर्स भी रखी हुई है।

जिसमें लिखा हुआ है माँ योगेश्वरी डेली नीड्स एंड जनरल स्टोर्स धार।

इस इमेज में सामने एक घर बना हुआ है।

सामने कुछ पैकेट कुरकुरे के टंगे हुए भी दिख रहे हैं।

जो की एक पेड़ से टिकी हुई है।

काफीसे काफी सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं।

और पेड़ के पीछे कुछ मकान भी घर बने हुए दिख रहे हैं।

और सामने दो दुकान भी दिख रही है।

ज् जो की एक स्टैचू है और ये नीले रंग का स्टेचू है।

जिसके बैनर पे लिखा हुआ है वाइट रंग से हांडी रेस्टोरेंट ।

और ये सामने बड़ा सा बैनर लगा हुआ है।

एक बेड रखा हुआ है जिसपे--

सुंदर सी लाइट्स भी लगी हुई है।

और कोई पूजन अर्चना कर रहा है।